कुर्सिया पड़ी है पंखों लागेड़ो है फोटूवा लागेड़ी है अलग अलग पर्दा लागेड़ा है कांच लागेड़ा है।

ऐ अलग अलग आपका ऑफिस मे बैठ्या है अलग अलग काम कर रिया है कुर्सियां पर मेडमां बैठी है छोरा भी बेठिया है।